यह फोटो बैंक ऑफ़ इंडिया के बाहर की फोटो है जिसमे यह बैंक तीन मंजिल दिख--

ये फोटो स्टेट बैंक ए.टी. एम. की है जिसमे ए.टी. एम. के अंदर जाने के लिए गेट लगा हुआ है एवं पैसे निकालने के लिए लाइन भी लगी हुई है।

यह फोटो एक रेस्टोरन्ट कि है जिसमे कुछ टेबले कुछ कुर्सियाँ लगी हुई है।

इस फोटो में हमे एक व्यक्ति दिख रहा है जो डांस कर रहा है एवं हाथ और पैर में जुत्ते पहने हुए है।

-- एवं अलग अलग कलर के फ्लो-फ्लोवर रखे हुए है।

इस फोटो में हमे तीन कुर्सी दिख रहे है तीन मिरर दिख रहे है एवं कुछ सैलून का सामान दिख रहा है इसमें फ़ोन पे का कार्ड भी दिख रहा है।